यह दृश्य हमें किसी--

इस दृश्य में हमे बहोत लोगों की भीड़ नज़र --

बोर्ड पर हमें यू_के पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स लिखा दि--

उसके आस पास हमें वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

होटेल या ऑफिस का नजर आ रहा है।

इसमें ऊपर लाइट्स भी लगी दिख रही है।

लग रही है इसमें हमें दो वर्कर्स दिख रहे हैं।

वह अपना वर्क कर रही है।

दुकान का दृश्य दिखाया जा रहा है।

इसमें ए_सी और लाइट्स और लोग भी बैठे हुए दिख रहे--

मे पूजा करती हुई दिखाई दे रहे हैं।